एक हाउसिंग कॉलोनी का हम सीन देख पा रहे है जहाँ पे प्रोबेबली नया नया ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बना है। अ जो गवर्नमेंट ऑफिसीयल्स के लिए क्वार्टर्स बनाये जाते है वैसा हम सीन देख पा रहे है जहाँ पे कुछ सब बैठे हुए हैं। शाम के समय का सीन है।

एक मंदिर परिसर का म् सीन यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि अं जैसे बाउंड्री से अच्छे तरीके से घेरा गया है। एक बहोत ही बड़ा सा और बहोत ही पुराना सा पेड़ हम देख पा रहे हैं।

बोहोत ही सुन्दर और प्यारा सा सीन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि होली खेली जा रही है प्रोबेबली बनारस अ वृंदावन की जो होली होती है अ वर्ल्ड फेमस --